ये चित्र एक कालोनी के अन्दर का दिख रहा है।

अंदर बिजली के दो बड़े खंबे भी दिख रहे हैं ।

छत पर चौकुटी लाइटें लगी हुई दिख रही --

ये चित्र एक बड़े से तालाब का दिखाई दे रहा है।

लोग पूजा करते हुए दिख रहे हैं इनके हाथ में पूजा की थाली --

एक व्यक्ति कुछ पढ़ाता समझाता दिखाई दे रहा है ।

और एक जमीन पर एक चीता दिखाई दे रहा है ।

जमीन पर बहोत सारी घास उगे हुए दिख रही है।

जमीन पर बहुत सारी घांस एक बैनर लगा है ।

दीवार पर एक टी_वी लगी है जो कि चल रही है ।

यहाँ बहुत सारे अलग-अलग गेट बने हुए हैं।

दो ल दो टंकियां रखी हुई हैं जो सफेद और लाल हैं ।

ये चित्र एक बड़ेसे ग्राउंड का दिखाई दे रहा है।

दो गमले लगे हैं उसमें फूल लगे हुए हैं ।

ये चित्र एक स्टेज का दिखाई दे रहा है ।

फासिल अंबारी गोहाटी पचीस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

येह चित्र एक नर्सरी का दिखाई दे रहा हैं जिसके बैनर पर--

ये चित्र एक बड़े सारे गार्डन का दिखाई दे रहा है ।

दाना पानी रोड भोपाल लिखा हुआ है कांटेक्ट नंबर डला है।

यहाँ पे आसपास नेट की बाउंड्री दिखाई दे रही है शेड दिखाई दे रहा --

यहाँ की खिड़कियाँ काँच की हैं बीच में हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है ।

यह चित्र एक आइसक्रीम की दुकान का दिखाई दे रहा है। जहां पे नेचुरल टेस्ट द ओरिजिनल --

और यहां साइड में घास उगी हुई है।

चित्र में एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहाँ पीछे --

पीछे की ओर टेंड गुलाबी अथवा पीले कलर का दिख रहा है ।

ये चित्र एक स्टेज शो का दिखाई दे रहा है.

जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं और अपने दोनों हाथों में--

यहाँ पे जीने हैं जीनों पे हरे कलर का टाइल कारपेट बिछा हुआ है.

कोई यहाँ जमीन का गरीसीय है पत्थर है.

ये चित्र एक मस्जिद के बाहर का दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर--

काला कुर्ता सफेद पजामा पहना है--.

ये लोग ताजिए पे हाथ रख के फोटो खिंचवाते हुए दिख--